कुछ रॉक्सी की साइकिल हैं और यहाँ पर उसके ऊपर का जो सेल्फ हैं उसमे छोटे बच्चों के लिए तीन पहिया साइकल भी रखी हुई हैं।

यहा पर हमको एक केक दिखाई दे रहा है जो की फूल व्हाइट वनीला केक लग रहा है और इस केक के ऊपर पुल रेड कलर्स --

यहाँ पर कोई छोटा- सा सजाया गया है बहुत सुंदर से एक चार पिलर वाला कुछ बनाया गया है और उसके ऊपर मे फूलों से सजाया गया है उस --

यहा पर हमको एक बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है और इस ए_टी_एम ये ए_टी_एम ऐक्टिव ए_टी_एम है और यहा पर एक छोटा सा डस्ट्बिन रखा है जिसके अंदर बहोत से कागच पड़े हुए है।

जो लकड़ी का सेल्फ है और उसको पूरा पोलीश करके रखा गया है और इस सेल्फ मे हर तरह की खुशबु की अगरबत्ती दिखाई दे रही है जैसे की मोगरा है गुलाब है।

इस शोरूम मे बहोत सारी गाड़ी लग हुई है ब्लू कलर की रेड कलर की व्हाइट कलर की मारून कलर की और शोरूम का जो फ्रन्ट लुक है वो फूल व्हाइट कलर से पैंट किया गया है।

यहा एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकी काफी बड़ी सी बिल्डिंग है और काफी दूर मे फैली हुई है।

और ये प्रतिमा लेटी हुई है जिसको बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर मे बनाया गया है ये प्रतिमा एसी प्रतीत हो रही है जैसे यह अभी सो रहें हैं।

यहाँ दो बस है जिसमे एक बस रेड कलर की हैं रेड ओर येलो दूसरी जो हैं व्हाइट कलर की बक्स है बस है एक ए_सी वाली बस हैं ।